जैसा की मैं देख पा रही हूं यह चित्र छात्रावास की है जहां तीन लड़के मेज पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं।

यह चित्र किसी होटल की है जहां हरियाली के बीच में खानपान की व्यवस्था की गई है।

एक आवास की है जहां सामने की ओर मुख्य द्वारा पर दो गाड़ियां नजर आ रही हैं।

काफी सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं साथ ही कुछ वाहन भी लगे हुए हैं।

की दुकान है जिसमे इस्त्रीवाला कपड़े इस्त्री कर रहा हैं।

मैं इस तस्वीर में देख पा रही हूं यहां एक मैदान है जहां दो लोड़क लड़के खेल रहे हैं पास ही एक इमारत बनी हुई है।

यह तस्वीर तीन लोगों को दिखा रही है जो कि आपस में हाथ मिलाकर--

यह तस्वीर किसी ब्यूटी पार्लर की है।

जहां पीछे प्रचार के लिए एक पोस्टर लगाया गया है साथ ही बैठने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं।

जैसा कि मैं इस तस्वीर में देख पा रही हूं यह तस्वीर किसी डाक विभाग की हैं।

जहां एक ड्रम दिखाया जा रहा है जिसमें लोग पहले के जमाने में अपने--

भी गांव छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक भवन नगर पालिका की है।

जिसमें एक भाग खाली है तथा दूसरे भाग में कुछ लोग और कुछ गाड़ियां हैं।